यहां पर बहुत सारे पौधे लगे हैं जो हरे कलर के हैं और ये एकदम --

हल्का हरा और कुछ डार्क हरा हो रखा है।

कहीं-कहीं पर पत्तों का कलर लाल भी है जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं।

जहां पर टैटू बनाए जाते हैं और पीछे पोस्टर लगे हैं जिसमें --

और बाहर की तरफ वाइट कलर के ग्लास से इन्हें अरेंज किया गया है यहां सारे जेंट्स के कपड़े हैं।

सामने कुछ चेयर्स वगैरह लगी हुई है सामने की तरफ --

और जो बड़े पेड़ लगे हैं उनके नीचे ही कुछ एलोवेरा के छोटे पौधे लगे हुए हैं।

और मंदिर में कुछ पर्दे लगे हुए हैं और यह मेन गेट जाने का है जहां से बहुत सारे लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं।

बहुत सारी महिलाएं हैं पुरुष है और बच्चे भी हैं जो मंदिर के अंदर जा रहे हैं।